यहाँ एक प्लेग्राउंड लग रहा है जो काफी बड़ा है।

जोकि बहुत सुंदर है यहाँ पे दो टेडी रखे हैं। यहाँ पे गुब्बारे सजाये गये हैं लाल पीले काले रंग के है पास में इन्वेटर लगा हुआ है। यहाँ पे एक मशीन भी है पीछे पोस्टर लगा है।

बिल्डिंग है। यहाँ पे एक पेड़ भी है। पास में दो पोस्टर लगे हुए हैं। इसमें एक आदमी की --